मशिन्स लगी हुई है छोटी -छोटी सी भी सिलेंडर है ब्लू कलर है का है खिडकी दिखाई दे रहा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहा गमलो पे पेड़ लगा हुआ नज़र आ रहा है जहा पे बहुत सारे गमले है और एक ही प्रजातिके पेड़ लगाए गए है। ऊपर चादर लगी हुई नज़र आ रही है।

यहाँ भी बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है पानी भरा हुआ हैरेलिंग बनी हुई है कुछ पेड़ रेड टाइप दिख रहे है कुछ ग्रीन टाइप दिख रहे है कुछ डार्क ग्रीन टाइप दिख रहे है।

यहा एक किला नज़र आ रहा है सिडिया नज़र आ रही है काले-काले कलर की दिवार दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है उपर आसमान दिखाई दे रहा है झेंडा नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का --